यह हमें एक रूम का दृश्य दिखाया जा रहा है।

भी पड़ी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में हमें बहोत सारी शॉप्स दिखाई जा रही है।

यह हमें किसी दुकान का दृश्य दिखाया जा रहा है।

इसमें हमें बहोत सारे व्हीकल्स जैसे कि नई नई एक्टिवा पड़ी हुई नजर आ रही है।

बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में हमें बहोत सुंदर--

उनकी ऊपर फसल उगी हुई है।

यह पूरा लाइटों से सजा हुआ है।

इसके अंदर हमें बहुत सारी व्यक्ति भी दिखाई दे रही है।

नीचे रॉ में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें एक ग्लोब भी पढ़ा हुआ दिख रहा है।

कि हुई नज़र आ रही है।

जिसके ऊपर साईं मोटर गैराज लिखा हुआ है।

जे_सी_बी मशीन्स पड़ी हुई नजर आ रहीं हैं।

शायद यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है।

उसमें बहोत सारी वृक्ष उगी हुई है।